बड़ा सा एन एंट्री बोर्ड नजर आ रहा है जहा पे महाविधालय लिखा हुआ है एक लड़की है जो की गिरती जा रही है ।

बोहोत सारी बैलून्स है डेकोरेशन हुई हैं रेड कलर की पर्पल कलर की येल्लो कलर की ब्लू कलर की व्हाइट कलर की वहाँ कैमरा मैन भी है कुछ लोग फोटो खिंच --

एक हॉस्पिटल के बहार की फ़ोटो है जहा पे बाहर दो एम्बुलेंस खड़ी है एक आदमी खड़ा है बहार से--